लड़की हो लड़का हो टेबुल हो टोपी लगाईले हो व्हाइट कलर कपड़ा पहिंले हो रेड कलर के ब्लैक खिड़की गेट --

व्हाइट कलर ह धरती हाओ सीढ़ी ह पिलर डिजाइन बनल हा।

फील्ड हव झंड़ा हव बहुत सारा आदमी हव ब्लैक कलर के पहिले हव व्हाइट कलर के टोपी लगाईले हव।

गमला हो आदमी हय ब्लू कलर के कपड़ा पेनलेह हो पीला कलर के कपड़ा पेनलेह हो मास्क लगयले हो वाइट कलर कपड़ा है।

वाइट कलर हो धरती हो।

पर्दा हो खिड़की हो फूल हो गमला हो आदमी हो ब्लैक पिंक कलर --

सचल हाओ सीढ़ी हाओ फूल हाओ आदमी हाओ कुर्सी हाओ पेंट कलर के ब्लू कलर के वाइट कलर के घर घर हाओ।

मंदिर हाओ ताजमहल हाओ पिलर हाओ मूर्ति हाओ ।